जैसे की मै देख रही हु यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही हैं जो की किसी जिम की इमेज लग रही है। यहाँ पर तीन लड़के खड़े हुए है जो की सेल्फ़ि ले रहे है कांच मै। नीचे मैट बिछी हुई है जो की नीली और लाल कलर की है।

जैसे कि मे देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है जोकि किसी जिम की इमेज लग रही है। यहाँ पर अ एक अ आदमी दिखाई दे रहा है जो की सेल्फी ले रहा है।

जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो कि किसी जिम की लग रही है। यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है। पीछे जिम के बोहोत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। और पीछे बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है।

और नीचे लाल कलर की मैट बिछी हुई है वो लड़की लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है पीछे कुछ कुर्सियां रखी हुई है जिनकी ऊपर सफेद कपड़ा है और ये स्टेज का इमेज है ।